झंडे के आगे एक चारों तरफ दिवारें उठी हुई दिख रही है गोल चै गोल वाला गेट लगा हुआ स्टील का दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

अंदर हमे एक मन्दिर दिखाई दे रहा है मन्दिर सफेद रंग से पुता हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग बेसिन के पास खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं सामने हरे-भरे पेड़ लाइन से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आसमान नीला और सफेद रंग का दिखाई दे रहा है।

एक बड़ी सारी कार दिखाई दे रही है जो सफेद रंग की है जिसके कांच और उसकी हैडलाइट दिख रही है आस -पास हरे -भरे घास का पेड़ दिख रहा है कुछ काले कलर का बोट जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है--

पानी का टप रखा हुआ है कुछ समान रखा है लाइट जलते हुए दिखाई दे रही है दुकान के ऊपर नीले रंग और काले रंग का बोर्ड लगा जिसपे लाइट लगी हुई है दुकान के पास एक और शटर है जहां पर लेडिस की फोटो लगी है।

के अंदर हमें एक बाजार दिखाई दे रहा है बाजार में दो ठेले दिखाई दे रहे है एक ठेला लाल रंग का जिसपे एक नीले रंग से कुछ लिख छत लगी हुई दिख रही है पास में गाड़ी दिखाई दे रही है कुछ ही दूर पे एक रिक्शा दिखाई दे रहा है इसका टायर भी लाल रंग के दिख रहे है रिक्शा के --